एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के दोनो से तरफ एक सी सजावट है।

तो इसमें हमको निकर अपने आराध्य देवी पूजा करनी चाहिए जिसमे हर प्रकार की हर सि सिद्धि रहती है।

यहाँ बैंक खाता खुलता है।

कुछ ऊपर छ कौऐ उड़ रहे है।

यहाँ पे पानी भरा हुआ है बीत पानी भरा हुआ है खेत मे पानी भरा दूसरे एक झील है उसमें भी पानी भरा है और झील है उस पानी के बीच मे एक--